येह तस्वीर में हमें--

कुछ लोग भी नजर आ रहे--

कुछ भीड भी नजर आ--

विदेशी दिखाई दे रहा है क्लिनिक --

रहा है काफी का नाम--

की दिखाई दे रही है।

जहां हमें डॉग फूड नजर--

जहां हमें कुर्सियां और मेज लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कैफे का दृश्य नजर आ रहा--

ट्रक जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर हमें एक नदी की दिखाई--

यह तस्वीर में हमें एक नदी दखाई दे रही है।

ए_सी लगा हुआ नजर आ रहा--

सारे पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे--

हमें एक शादी का दृश्य दिखाई--

इस तस्वीर में हमें एक रूम का--